विद्यालय के बाहर कुछ बाइकें खड़ी हैं।

यहाँ बाहर से हरे कलर के बोर्ड मे इसका नाम लिखा हुआ है।

यहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ सूरज ढल रहा है।

एक बगीचा है जिसके सामने दो मंजिला तथा तीन मंजिले जैसी बिल्डिंग खड़ी हुई हैं।